और यह जो प्लेट है ये काफी ज्यादा--

ये घर का दरवाजा जो है वो रेड कलर का है और यहाँ पर ये जो घर है वो वाइट रंग की है।

यहां पर सब सन्नाटा छाया हुआ है।

बहुत सारी मछलियाँ काट कर रखे हुए हैं।

घास उगे हुए हैं यहां पर कुछ टायर्स लगे हुए हैं।

कही कही दूर दूर तक पेड़ लगा हुआ है एक हैंगिंग पूल दिखाई दे रहा है।

ये जो जगह है ये एक बाहर का--

ये जो जगह है ये एक मंदिर का क्या सकते कि मस्जिद है।

फॉर लेडीज है ऊपर रेड कलर चादर लगा हुआ है यहापर बोहोतसारे स्टैर्स लगे हुए है।

आसपास जो बिछाया हुआ भी है जो कि ब्लैक लग रहा है।

ये जो जगह है ये बहुत ही अलग दिखना है जो कि ब्लैक कलर का है।

ये जो है ये एक मंदिर है जहा पर कृष्ण भगवान और राधा जी--

ये जो टेबल है ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है।

ये जो जगह है ये बाहर का--

क्या कि जो दिवारी और ग्रीन कलर से किया हुआ है।

यहाँ पर एक अलमारी है जो की ब्राउन कलर की है।

पास एक पेन और कॉपी है एक माउस है यहाँ पर एक--

गिलास भी रखा हुआ है और बहुत सारे लोग भी मौजूद है।

और जीम करते हुए दिखाई दे रहे हैं इसके आसपास--

ये जो जगा है ये तो योगा क्लास है जहा पर बहुत सारे लोग है।

और ये अपने आप में योगा कर रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे--

एक बाइक सजाया हुआ है यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद है।

मैं इस चेयर को पीले रंग से सजाया हुआ है।

ये जो जगह हैयहाँ पर बहुत सारे सामान रखे हुए हैं जो कि एक वीडियो है एक--

बहुत सारे साउंड बॉक्स है की-बोर्ड भी रखा हुआ है यहाँ एक जो चेयर है उसम पिंक कलर का टावल लगाया हुआ है.

इसके आगे जो फ्लैट है उस पे के_एफ_सी लिखा हुआ है और रेड कलर से लगा हुआ है।

वो जो ब्लैक कलर से रंगा हुआ है।

और यहाँ पर भी काफी ज्यादा साफ-सुथरा से किया गया है यहाँ का जो--

टाइल्स है वो एक वाइट कलर के टाइल्स से बनाया हुआ है ऊपर बहुत सारे पंखे लगाए गए हैं।

यहाँ के जो कालीन है वो रेड कलर से रंगे हुए हैं।

इस कैप का नाम है बी_एफ_एफ है और इसके पास दो आदमी दिखा रहे हैं जो कि सामान को बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

निचे का फ्लोर जो ग्रीन है जो कि घास से फरा पड़ा है।

ये जो जगह है ये रूम का है जहाँ पर बहुत सारे सामान बिखड़े पड़े हैं।

पैर सीधे है ऊपर पडदे है जो की--

कहीं फ्रेश कलर के नजर आ रही है अपने जो डेक्स है वो पिंक कलर और वाइट कलर से बना हुआ है।

और ये सीडी जो है वो ब्लैक कलर है इसकी--

इसके आसपास कुछ गाय है जो कि जमीन पर है।

पानी पानी दिखाइ दे रही है।

यहाँ पर जो पडदा है वो ब्लू रंग का है और इसके आसपास है।

यहाँ एक टोकरी है यहाँ पर एक स्टैंड है यहाँ पे--

यहाँ पे जो चेयर है वो भी ब्राउन रंग का हैं कह सकते है कि ये फेस कलर का है।

और यहाँ पर फ्लोर का भी साफ-सुथरा है।

नीचे से जो स्पेस है वो ग्रिल लगा हुआ है जो कि ब्लैक कलर का है।

भरा पड़ा है और यहाँ पर खाली मैदान है लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है।

अपने अपने मरीज को लेके आए हुए हैं।

क्योंकि लाइन बनाकर खड़े हैं और पूजा लेकर खड़े हैं।

ये जगह है यहां पर काफी एक कमरा है जो कि काफी साफ सुधरा दिखाई देता है।

यहाँ का जो ओवर स्टेज लगाया हुआ है वो पूरा--

यहाँ पर ग्रीन कलर का दीवार लगा हुआ है और उजले कलर से लगा हुआ है।